उधर भी एक लोहे का कुर्सी दिख रहा है उस पर भी एक आदमी बैठा हुआ है ।

पीछे एक सफ़ेद रंग का बिल्डिंग भी दिख रहा है।

दूर में बहुत सारे पेड़ और --

इसमें महिलाओं के श्रृंगार के बहुत सारे समान भी रखे गए हैं ।